बस ये स्कूल का डिज़ाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है | इस स्कूल को इंजीनियरिंग नक्शा से बनाया गया है जो काफ़ी ज्यादा अच्छा लग रहा है |

और इस बस में यात्रा करने वाले लोग सब आ रहे हैं और इस बस में बैठेंगे |

और ये बहुत ही अच्छा लगता है इस गेट का व व्हाइट और रेड से किया गया है जो काफ़ी ज्यादा लग रहा है और गोल करिया से डिजाइन बहुत ही अच्छे से --